ये एक घर दिखाई दे रहा है जिसका कलर क्रीम कलर का है उसमें एक गेट लगा हुआ है जोकि--

यह एक घर नजर आ रहा है जहां घर के बाहर दो बोर्ड लगे हुए हैं।

यहां एक घर नजर आ रहा है जो लाल कलर और क्रीम कलर का दिख रहा है यहां पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

जहां पर बहुत सारी कार खड़ी हुई हैं दो कार सफेद कलर की और दो काली कलर की दिखाई दे रही हैं।

ये एक खेल का मैदान है जहां पर कुछ लोग खेल रहे हैं।

यह एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें बहुत बड़ा हाल बना हुआ है। हाल में बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई है।

यहां एक ऑफिस दिखाई दे रहा है ऑफिस में एक कवर्ड बना हुआ है उसके ऊपर लैपटॉप दिखाई दे रहा है।

ऊपर छत का कलर सफेद है छत में पंखे लगे हुए हैं एक ए_सी भी दिखाई दे रहा हैं।

ज और कुछ बोर्ड पे लिखा लिखा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जोकि भजन गा रहे हैं उनके हाथों में ढोलक दिखाई दे रही है।

कार के बाजू में एक मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है जिस पे एक आदमी बैठा हुआ है।

यह एक शोरुम दिखाई दे रहा है यहां पर कुर्सियां रखी हुई हैं एक कुर्सी काले कलर की दिखाई दे रही है।

बहोत सारे आदमी झूला झूल रहे हैं यहां पर बहोत सारे लाइट --

कुर्सियां रखी हुई हैं कुर्सियों का कलर नीला है यहां पर टेबल रखी हुई है जो कि ग्रे कलर की दिखाई दे रही है।

कमरे का कलर नीला पुता हुआ है नीचे फर्श का कलर सफेद दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है जो सफेद कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं जिसकी--